एक बेड है बड़ा सा लाइट्स लग रही-- कर्टन है फ्रेम है बेड बहुत सारे तकीये है ।

इधर एक ग्राउंड हेगा।

हरा-भरा दिख रहा है। बादल दिख रहे है पेड़-पौधे नजर आ रहे हैं ।

आगे कुछ चेयर्स वगैरा दिख रही हैं।